ये एक प्लेग्राउंड है साइकिल का कलर लाल और काला है।

यहां बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

ये दृश्य काफी सुंदर है जहां पक्षी उर रहे हैं दो नाव चल रही है।

यहां बिस्किट से लेके आटे से लेके घर के सारे खाने के समाने मिलती हैं।

ये बस एक प्रवेश का द्वार है।

इसमें आदमी अपने बाल और दाढ़ी बनाते हैं।

एक रिसेप्शनिस्ट एरिया भी है।

ये एक स्टेशनरी की दुकान है स्टेशनरी की दुकान में पेंसिल कलम पेन इरेजर इत्यादि मिलते है।

नीचे जमीन भी कितनी हा हरी भरी है आसपास भी कितनी शांति दिख रही है।

सभी लोगों के हाथ में एक किताब है।

रूम को सजाया गया है रूम का कलर सफेद है रूम काफी सुंदर लग रहा है।

यहां का ऑनर ही बुक बेचता है यहां बहुत सारी किताबें रखी हुई है।

सैलून में एक बड़ा सा आईना है आईने के पास बहुत सारी क्रीम और इत्यादि समान रखी हुई है।

पानी के बहाव से गाड़ियों को साफ किया जाता है।

इस दुकान में केक का भी ऑर्डर दिया जाता है।

इसमें दो आदमी फोटो घिन्चा रहे--

घर के लिए अभी नींव रखा गया है।

ये एक ऑफिस जैसा रूम लग रहा है बट ये ऑफिस न होकर एक पार्लर है।

ये एक बड़े और भव्य गेट की तस्वीर है।

काफी बड़े बड़े पेड़ और घास फूस गेट के अंदर दिख रहे हैं।

ये रिसोर्ट में खाने के लिए भी--

ये फोटो एक फर्नीचर शॉप की है।